यहां पे में बोहोत सारे ब्राउन कलर के टेबल और कत्थक कलर के--

लग रहा है जिसमें हमे बहोत सारा बुक देखने को मिल रहा है।

चिंगड़ी मच्छी एक प्लास्टिक में करके --

और उसका बोहोत सारा पांव और बोहोत सारा मूंछ भी देख --

पर तालाब के ठीक बाहर मुझे एक बत्तख भी --

में कि में बोहोत सारे साबुन और--

क्या हुआ लाइटिंगों से लग रहा है।

और छत की ऊपर कुछ --

और एक टीचर उन्हें एक आ बोर्ड पर --